यहां पे एक सड़क नजर आ रही है और आसपास हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक मार्केट नजर आ रही है यहां पे मुझे बहुत सारी मछलियों की दुकानें दिखाई दे रही है।

जिसमें बुक्स रखी हुई हैं कुछ लाइट्स भी यहां पे जलती हुई नजर आ रही हैं।

कुछ ने व्हाइट कलर के कैप पहनी है किसी ने ब्लैक कलर की टोपी पहनी हुई है।

कुछ ए_सी भी दिखाई दे रहे हैं और गमले में कुछ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और यहा पे कुछ प्लास्टिक का समान भी नजर आ रहा है।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

एक बेड दिखाई दे रहा है जिसमें पिलो और व्हाइट बेडसीट बीछी हुई है।